एक दु लोग मास्क लगाए हुए हैं।

इसमें रखा हुआ है ब्रेड ।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

ये दुकान का दृश्य दिखाई दे रहे हैं घर का कलर पीला और सफेद है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है और पीला कलर के झंडा दिखाई दे रहे हैं।

बहुत बड़ा डब्बा दिखाई दे रहा है डब्बा कलर लाल है।

बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं बहोत सारे बल्ब जल रहे हैं।

मंदिर का गेट का कलर है लाल।